और सफेद कलर की बनियान पहनी है और अंदर छोटी सी माला भी पहनी हुई है।

इस फोटो में मुझे एक मंदिर दिख रहा है और मंदिर को एसेसरी लाइट से डेकोरेट किया हुआ है लाइट्स येलो कलर की हैं और मंदिर काफी सुंदर लग रहा है।

उसके पीछे और गाड़ी है लेफ्ट साइट में रोड है रोड पे दो तीन गाड़ियां दिख रही है।

पीछे पेड़ दिख रहा है ऊपर अ टावर दिख रहा है और उसपे से इलेक्ट्रिक वायर लगे है।

इसपे गुजराती में कृषि प्रयोगी केंद्र लिखा है।

यहां पे एक कॉम्प्लेक्स दिखाएगा और कॉम्प्लेक्स में बहोत सारी दुकाने दिख रही --

इस फोटो में मुझे एक तालाब दिख रहा है तालाब के राइट साइड में एक बोन्ट बोट भी रखी है।

इस फोटो में मुझे एक कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख रहा है ये एक रूम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है।

इस फोटो में मुझे एक गैराज दिख रहा है और इसमें बहोत सारी गाड़ियां रखी हुई है।

और गाड़ियों के बोनट खुले हुए हैं और गाड़ी रेड कलर की ग्रे और सिल्वर कलर की हैं।

अ सफेद कलर का ए_सी है और खिड़की है।